इस फोटो के अंदर के सफेद कलर की गाड़ी है वो आगे से खुली हुई है एक आदमी या मिस्त्री मैकेनिक लगा हुआ है इस गाड़ी को ठीक कर --

उपर लाईट लगी हुई है दीवारों के ऊपर सफेद कलर किया हुआ है।

यहां पर गाड़ियां खड़ी है बाहर दो एक ब्लैक कलर किया तो एक सफेद कलर की है गाड़ियों के आगे दो पेड़ है।

ऊपर हरे-हरे गुब्बारे लगे हुए है बहोत सारे कुछ पिंक कलर के है कुछ सफेद कलर के है तो कुछ स्याही कलर के है।

कुछ पेड़ लगे हुए है वो कुछ सूखे हुए पेड़ हैं कुछ हरे-हरे पेड़ हैं और ये पहाड़ बहुत दिख रहा है।

नीचे गमले पड़े हैं रंगीन कलर के कुछ हरे कलर के है तो कुछ सफेद कलर के हैं तो कुछ ब्लैक कलर के है।

फूलों की मालाएं लगी हुई हैं कुछ फूल--

लौकी है खीरा है केले हैं और कुछ टोकरी के अंदर हरी हरी सब्जियां रखी हुई है।

यहां पर सामने शिव सागर रेस्टोरेंट फर्स्ट फूड बना हुआ है।

यहां पर ये बेंच है लकड़ी की बेंच के ऊपर सफेद कलर की एक प्लेट है प्लेट के अंदर कुछ परांठे रखे हुए हैं।